और सामने एक एस.बी.आई. बिल्डिंग दिख रहा है और उनपर बोर्ड दिख रहा है ब्लू कलर में और लिखा हुआ है एस.बी.आई. |

अब वो सामने बेंचेज दिख रही है उसपे कुछ ए बिछा हुआ दिख रहा है और कुछ बुक्स वगेरा पड़ी हुई है कॉपी वगेरा।

एन्ने बहुत से कपड़े टंगे हुए दिख रहे हैं सामने के साइड एक ठो टू व्हीलर बाइक दिख रही है।